उस पर द सिटी कैफ़े लिखा हुआ है।

यहाँ पर तन्दूरी रोटी सब कुछ मिलता है।

और यहाँ चारों तरफ घेरा गया है। बॉर्डर भी लगायी गई है।